यह एक नदी का चित्र है जहाँ पर बहोत सारा पानी भरा हुआ है और घास भी लगी हुई है।

और ये मछलियां देखने मैं काफी काफी सुन्दर भी हैं।

यहाँ पर कोई चीज़ का रिसर्च होता है।

यह मछली मार्केट है जहां पर बोहोत सारी मछलियां रखी हुई हैं और यहाँ पर काफी लोग भी हैं।

जो इन मछलियों को देख रहे हैं और मछलियाँ खरीद रहे हैं। यह चित्र बहुत ही सुंदर सा दिखाई दे रहा है।